और बहुत सारी ऑयल की बोतलें भी रखी हुई--

यहां पर पोस्टर भी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं यहां पर एक आदमी का पोस्टर लगा हुआ दिखाई दे रहा है।